इस पह्प ट्यूटोरियल में हम कम्पेरिज़न तुलनात्मक ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे
कम्पेरिज़न आपरेटर्स 2 मानों 2 स्ट्रिंग्स या 2 वेरिएबल्स जो इनमें से किसी को सम्मिलित करता हो उनकी तुलना कर सकते हैं तथा उस पर कार्य करेंगे
इसके लिए मैं इफ स्टेटमेंट का प्रयोग करने जा रहा हूँ
चलिए इफ स्टेटमेंट संरचना का निर्माण करते हुए शुरू करते हैं
मेरी शर्त है यदि 11 एचो
और फिर एल्से एचो
फलसे याद रखें मुझे इन कोष्टकों की आवश्यकता नहीं है अतः मैं इन्हें हटाने जा रहा हूँ
चलिए इसे जगह छोड़ कर लिखते हैं
कभी जगह छोड़ कर लिखने में संकोच नहीं करना चाहिए
यह पहला कम्पेरिज़न ऑपरेटर है
2to मतलब कम्पेरिज़न ऑपरेटर
हम यह इफ स्टेटमेंट में पहले देख चुके हैं
1 इक्वल्स टो 1 अतः यह ट्रू एचो करेगा
चलिए जाँचें
हमें ट्रू मिला
चलिए मैं इसे बदलता हूँ
इफ 1 जीटी 1 तब देखते हैं कि हमें क्या उत्तर मिलता है
फलसे क्योंकि 1 1 के बराबर है 1 से बड़ा नहीं
चलिए अब इसे बदलते हैं 1 gt 1 इफ 1 gt 1 एचो ट्रू एल्से एचो फलसे
यहाँ हमें ट्रू मिलना चाहिए
आप इसी तरह से लेस थान छोटा या इक्वल टो बराबर के साथ भी कर सकते हैं
अतः उदहारणस्वरूप लेस थान
फलसे होगा लेस थान छोटा या इक्वल टो बराबर के लिए ट्रू होगा
हम नोट इक्वल टो असमान भी कह सकते हैं
अतः इफ 1 इस नोट इक्वल टो1 एचो True
रिफ्रेश करें
हमें यहाँ फलसे मिलेगा क्योंकि 1 बराबर है 1 के
चलिए अब कहते हैं इफ 1 इस नोट इक्वल टो 2
हमें ट्रू मिला क्योंकि 1 2 के असमान है
यह बुनियादी कम्पेरिज़न आपरेटर्स हैं जिन्हें आप हमारे ट्यूटोरियल के लिए प्रयोग करेंगे
इस पर विस्तार करें इनका अभ्यास करें और आप इनको बेहतर समझेंगे
आप इन ऑपरेटर्स का उपयोग करके वेरिएबल्स की भी तुलना कर सकते हैं
अतः उदहारण के लिए num11 num22 अब हम क्या करें कि इन वेल्यू्स को बदल दें और हम करते हैं
यह बिलकुल वही उत्तर प्रदर्शित करेगा जैसा कि हमें पहले मिला था जो कि ट्रू है
अब हमें यह करना है कि इन वेल्यूस को बदलना हैं
कृपया ध्यान दें यह अब ऐसे पढ़ेगा नुम1 1 नुम2 1 अतः यदि नुम1 1 के बराबर नहीं है तो यह ग़लत है क्योंकि 1 1 के बराबर है इसलिए हमें फलसे मिलता है
यह सरल कम्पेरिज़न आपरेटर्स हैं
इनका अभ्यास करें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
धन्यवाद